दो सामने जीने बने हुए है एक वाच बनी है उस और नीचे लिखा है डीर --

नीलें कलर का है। एक लाल कलर का है और यहाँ पे माइक पे एक आदमी बोल रहा है। उसके कपड़े नीले कलर का हैं और पीछे एक पियानो बजाने की कोशिश कर रहा है।